अ बहुमंजिला इमारत के सामने में एक शटर लगा है अ ऊपर में एक बालकनी जो स्टील के रोड से --

पेड़ के बीच में सपेद् च मीनारों से भरी यह पूजा स्थल --

पूजा स्थल पूरे सपेद कलर की और ऊपर की डूंगर को हरे और सफेद कलर से डिजाइन किया। सामने एक लोहे का टावर दिखता हुआ धन्यवाद।

हरे भरे छोटे-छोटे घास उसके पीछे में खूबसूरत इमारत यहां दिख रही है। धन्यवाद।

आकर्षक मन को मोह देने वाली आप चारों तरफ रौशनीसे भरी औररैकों में चारों तरफ अच्छे अच्छे से सामान और --

आकर्षक यह छत छत के बीच में बहुत खूबसूरत डिजाइन और चारो तरफ लाइट जगमगाती हुयी |

ऊपर नीला आसमान सामने मैदान में कुछ पत्थर रखे हुए हैं कुछ हरे भरे घास दिख रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ से गोल यह राउंड सरकल का आकर्षक डिज़ाइन वाला चबूतरा --